कुछ समान नीले रंग के मेज के ऊपर रखा हुआ है।

सामने देखा जाए तो एक बहोत--

यह एक रेल्वे स्टेशन की फोटो दिखाई दे रही है जो की हाजीपुर जंक्शन है इस--

खड़े नजर आ रहे हैं कुछ खिलाड़ी खेल प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर एक--

यह तस्वीर एक बैंक की है जिसका नाम इलाहाबाद बैंक है।

दूसरी तरफ एक कोने में बहोत बड़ी लाइट लगायी हुई है।

हाथ में और सिर में उठाए खड़ी नजर आ रही है।

कुछ कुछ लिखा हुआ है भाषाएँ पंजाबी हिन्दी और अंग्रेजी है।

आसपास में कुछ हरियाली है और नीचे की फर्श साफ सुथरी एवं रंग बिरंगी टाइलों से--

शीशे लगे हुए हैं और शीशों के सामने बहोत ही सुंदर कुर्सियां भी है यह दुकान--